तीन बाइक सवार भी हैं यहां पर एक रेड कलर की बाइक भी खड़ी हुई है।

यहां पर कुछ सुंदर छोटे प्लांटस भी कलरफुल प्लांटस लगाए गए हैं।

बड़े हैं यहां पर वाइट कलर की काफी सुंदर--

यहाँ पर व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

ट्रक वगैरह हैं जो कि लोड होकर चल रहे हैं।

और उसके ऊपर कुछ है आंखों में आ --